और ये खेत जोते हुए भी है और दो चार गो पेड़ भी दिख रहे हैं।

एक पाउडर का है उसका ऊपर में एक फेयरलवली का है।

और ये वो रेड है वो व्हाइट है वो ग्रीन है वो ऑरेंज है.

और एक साइड में बी वाई लिखा हुआ है आगे से एक आदमी आ रहा है।

और साइड में चार-पांच गमला लगा हुआ है अंदर में अंदर में बैलून है.

एक बोर्ड में लिखा है ऐ_टी_एम लिखा हुआ है.

फोटो पखल के अंदर दो आदमी खड़ा हे और एक आदमि का जूता दिख रहा है.

और अम्-बहुत चॉकलेट है बहुत सारा डिब्बा है.

सो गद्द सोफा का कलर मिट्टी का कलर जैसा है.